के बीच में एक खाली शॉपिंग रखी हुई है।

इस तस्वीर में एक शेल्फ दिखाई दे रहा है जो अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है।

कुछ मेज और कुर्सियां हैं।

पीछे कुछ पेड़ और इमारतें दिख रही है।

टेबल के दोनों तरफ तीन तीन प्लास्टिक की कुर्सियां रखी है।

मंदिर का रंग हरा और सफेद है।

इस तस्वीर में एक सुंदर बगीचा दिख रहा है जो हरी भरी घास और फूलों से भरा हुआ है।

बगीचे में एक पत्थर का घुमावदार रस्ता है।

बगीचे के आगे तरफ एक सड़क है जिसमें कई गाड़ियां चल रही हैं।

पीछे की तरफ कुछ और लोग लगेज ट्रॉली उठाते हुए दिख रहे है।

ये एक हिस्से के ऊपर एक नीला छद लगाया गया है।

पीछे एक बड़ा पेड़ और सूर्य प्रकाश का रौशनी मंदिर पर गिरता हुआ दिख रहा है।

दुकानदार पान के पत्तों को छाट रहा है।

दुकान में कई तरह के पान मसाले दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति सामने स्टेज पर खड़ा होके प्रेजेंटेशन दे रहा है।

सड़क पर कई गाड़ियां और लोग चल रहे है।

इस तस्वीर में एक शांत और हरियाली से घिरा हुआ भवन दिख रहा है।

तस्वीर में एक पार्क का दृश्य है जहां एक बड़ी प्रतिमा स्थापित है।

खेल का मैदान हरे भरे घास से ढका हुआ है।

कमरे के सीलिंग के ऊपर ढेर सारे बैलून लगाए हुए हैं।

अ रेस्टोरेंट का दृश्य दिखता है।

तस्वीर में ढेर सारे थर्मोकोल के कार्टून दिख रहे है।

पीछे एक घर की नीली और सफेद रंग की दीवार है जो पार्क को बाउंड्री दे रही है।

हरियाली और पेड़ पौधे के साथ ओपेन एरिया दिखाई दे रहा है।